इस फोटो मे एक गेट बनाया और गार्डन है और इसमे ग्रीन ग्रीन ग्रा ग्रास है।

व्यक्ति के साइड में नीले रंग का ई रिक्शा भी रखा हुआ है।

शूट कर रहे हैं और उनके साइड में ही बहुत से लोग बैठे हुए हैं और इस चित्र में ए_सी भीं लगा हुवा हैं।

और एक जगह येलो कलर के फूल भी लगे हुए हैं।